वै पर कोट बणायां लेहंगन बणायां कोलिन बणायां यखम नीली बाल्टी रखीं टेबल रखीं टेबल एंच कपड़ान रख्यां गिलास रख्युं पाणी बोतल रखीं क्यू.आरन रख्यां।

ये पर रेत ही रेत दिखेणी पत्ता दिखेणा पिछाड़ी बहोत सारा औजारन रखयां लोहा का औजारन सब रख्यां।

लखड़ा कु यून कुछ बणायूँ यखम गेट बणायूँ गेट का बगलम एक बहोत बड़ू डालू बणायूं जख बहोत जे की साखा हर जगह फैली पेड़ पौधा दिखेणा पत्ता दिखेणा एक सीढ़ी दिखेणी।

उंडे बिटिन छोटी मोट्टी दुकाना दिखेणी खम्बा पर एल.आई.सी कु बोर्ड लग्युं आसमान दिखेणु मंदिर पर अलग अलग मंजिला हुईं रेलिंग लगीं।